हमें इस फोटो में एक पुराना बिल्डिंग देखने को मिल रहा है जिसका कलर--

और कुछ पोस्टर्स लगे हुए हैं और एक पर्सन आदमी है जो खड़ा है जोकि ब्लैक शर्ट और येलो येलो शर्ट और ब्लैक पैंट --

और अपोजिट साइड येलो शर्ट ब्लैक शॉर्ट्स में हैप्लेयर --

और इसमें एक रंग-बिरंग के कपड़े रखे हुए हैं रेड स्वेटर दिख रहा है एक वाइट और ब्लैक का एक सूट दिख रहा है।

फोटो में हमें एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप का दिख रहा है जिसमें वीडियोकौन श्री राम इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा लिखा हुआ है और अंदर में वाशिंग मशीन फ्रीज और सामने--

इस फोटो में हमें स्कूल बस दिख रहा एक बिल्डिंग दिख रहा जिसमें स्कूल बस लगा हुआ है येलो कलर का और एक स्कॉर्पियो लगी हुई है व्हाइट कलर की और एक बाइक है।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

मनोकामना मंदिर रक्सौल खुलने का समय आठ बजे से लेकर के छः बजे तक।

इस फोटो में हमें तीन आदमी दिख रहे हैं देखने को मिल रहे हैं।

हमें इस फोटो में एक दुकान दिख रहा है स्टोर जिसमें कई सारे आइटम रखे हुए हैं जैसे कि--

इस फोटो में कई सारे स्टूडेंट है कुछ लड़के है और कुछ लड़कियां हैं।

इस फोटो में एक क्लिनिक है जिसमें डॉक्टर मरीज को चेक-अप कर रहा है और एक महिला बैठी हुई है बच्चे को लेकर के और उधर सामने में --

यह फोटो एक स्कूल का है जिसमें खिड़की के पास लड़के खड़े हैं।

और एक आदमी नीचे बैठा हुआ है और एक आदमी खड़ा है और गार्डन है जिसमें रंग बेरंगे फूले लगी--

रंगबिरंगे गुबारो से सजाया गया है और जीम करने का--

सामान रखा हुआ है जिसका कलर ग्रे है और सीट का कलर ब्लैक और कई सारे लोग बैठे हुए हैं।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

कम्फर्ट स्टूडियो है सीट कवर --

ग्रीन ग्रीन पूरा लग रहा है बिल्डिंग का कलर अह क्रीम कलर है।

और नीचे लिखा हुआ है महेंद्रा फाइनेंस जिसका कलर अ ऑरेंज है।

इसमें इस फोटो में हमें एक मंदिर का गेट दिख रहा है जिस पे लिखा हुआ है रेड कलर से--

यह एक मिठाई दुकान का काउंटर है दिख रहा है देखने को मिल रहा है जिसमें रंगबिरंगे मिठाइयां हैं.

यह एक स्कूल का फोटो है जिसका बिल्डिंग का कलर वाइट है और अभी बच्चे लोग ग्राउंड में खेल रहे हैं और ग्रीन ग्रीन पेयर लगा हुआ है.